एक छोटा सा ऑफिस है।

दीवारो पे वाइट पेंट है।

ये एक बड़ा सा मैदान है जिसमें एक लकड़ी का लठा लगा हुआ है।

और ढेर सारे व्हाइट कलर के घर हैं।

ये एक रोड है रोड के अगल बगल व्हाइट पट्टी पड़ी हुई है।

ये सारे इसमें वाइट और ब्लू कलर के बैलून लगे हुए--

एक सिलेंडर रखा है रेड कलर का।

और चारों तरफ इसके ढेर सारे पेड़ लगे हैं।

ये एक टूटा हुआ घर है।

एक छोटी सी छत है उसमें ढ़ेर सारे पुतले हैं।

और लाल कलर की पट्टी है।

और एक पीले कलर की पट्टी लगी है।

एक तराजू रखा हुआ है।

यह एक मैदान है सामने एक दीवार खड़ी है पत्थर से।

जमीन पे कुछ ढेर सारे पत्थर पड़े है छोटे बड़े।

ये एक पार्क है जिसमें एक हाथी है वाइट कलर का पत्थर का।

ढेर सारे पेड़ लगे हैं बड़े छोटे।

सामने फूलों से सजा हुआ है।

और फल रखे हैं अनार अनार रखा हुआ है संतरा रखा हुआ--

जमीन इसकी ब्राउन है और एक कारपेट बिछी हुई है ब्लैक कलर की--

डलिया है डलिया में समान रखा है।

और एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है एक आदमी ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के खड़ा है।

और कुछ लोहे के खंबे लगे हुए हैं व्हाइट कलर के।

गिट्टी रखे हैं और ढेर सारी गिट्टियां पड़ी हैं जमीन पे।

दो बिल्डिंग है व्हाइट कलर की।

इसकी छत टीन की है।

और व्हाइट कलर की और पीले कलर की बोरियां है।

और सामने एक बड़ा सा घर है जिसके ऊपर दो बैनल लगे हुए है।

और कुछ ढेर सारे पत्थर इधर उधर पड़े हुए हैं।

थरो से कुछ डिजाइन बना है।

शीशा लगा है जिसमें आदमी दिख रहा है।

एक काउंटर रखा हुआ है पीले कलर का--

एक ब्लू कलर का पर्दा टंगा हुआ है।